यह एक रूम है यहाँ पर वाइट कलर की बोट लगाए गए हैं बगल में ओम स स्वस्ति भी बनाए गए हैं और एक बल्ब भी लगाया गया है जिससे रूम लाइट कर रहे है।